एक बस खड़ा है जहाँ रमन लिखा हुआ है। बस व्हाइट और ढ़ेर सारे कलर में है।

ये एक बस है जिसके शीशा पर लिखा है बिबेक बस मे----

सिल्लीगुड़ी फॉर लाइन से अररिया पूर्णियां किशनगंज बस बहुत बड़ा है रे---

एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा है रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे है।

एक घर है। घर बोहोत ही अच्छा है। ये घर के साइड मे बॉन्डरी से घिरा हुआ है।

एक पहाड़ी इलाका है यहाँ ढेर सारे जंगल है।

बहुत ही अच्छे होटल है। होटल के बहार एक बाइक खड़ा हुआ है। होटल की सजावट बहुत ही अच्छे लगते है होटल खूबसूरत है ।

यहां भगवान का पूजा करने आए हैं और यह कोई कोई यहां पे आ--

एक रेस्टोरेंट हे बोहोत ही अच्छा रेस्टोरेंट हैंढेर सारी लाइट विट लगा हुआ हे बोहोत ही अच्छे हे।